ये एक गाँव में शादी होने वाला है जो की इस गांव में बहुत ही अच्छे से सजाया गया है बहुत ही अच्छा लग रहा है।

देखने में ये गांव और कार्टून का बना कर रख दिया है जो की --

ये एक बहुत ही अच्छा जगह है जो की यहाँ बहुत लोग आते हैं घुमने के लिए और हम लोग भी आते हैं। ऐसा जगह पर घूमने के लिये बहुत ही अच्छा लगता है हम लोगों को ऐसा जगह में घूमने में बहुत ही --

इस स्कूल मे बहोत सारे टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं जो की बहोत ही बड़ा --